मैरून और वाइट कलर टीशर्ट पहने हुवे ये लड़का खेतों को--

भगवान की झांकी निकाली जा रही हैं और लोगों ने अच्छे ड्रेस पहन रखी हैं।

इस इमेज मैं सभी लाडिज़्ज़ो के हाथ मैं--

नने मुने बच्चों ने नए नए ड्रेसेस पेहने हैं।

और बहार हवन भी हो रहा हैं लोगो ने नए ड्रेसेस पहने हैं और मंदिर के अंदर जा रहे हैं।

और बचे अपनी अपनी प्रतियोगिता मे--

है और वह बहार की ओर जेब्रा देख रहा है।

इस इमेज मैं फूल माला बनायीं गयी हैं जो की मोगरे और लाल कलर की फुल से बनी हुई ये --